यहां पे एक व्यक्ति साइकल से जा रहा है जिसने व्हाइट कलर की शर्ट पहने ब्लू रंग की पैंट पहने और मास्क लगाए हुए हैं।

डलिया की कलर पिंक कलर की है।

जहां पे दो बसे लगी हुई है।

जहां पे ढेर सारे लोग खड़े हैं।

मोटरबाइक भी वही लगी हुई हैं।

पीछे कई सारे पेड़ लगे हुए हैं।